और मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहोत सारी मूर्तियाँ भी दिखाई दे रहे--

दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर कपडे भी दिखाई दे--